कुछ रेड दिख रहे हैं और कुछ हरे भी दिखाई दे रहे--

मुझे बहोत सारी साड़ियां भी दिखाई दे--

मुझे एक फैन भी दिख रहा है।

मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारी गाय दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारी बुक भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा हैं।

यह एक झंडा भी दिखाई दे रहा--

के लाइट और पंखा भी दिख रहा है।

मुझे उसमें स्पीकर दिख रहे हैं और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक टोलटैक्स दिखाई दे रहा है।

मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे कुछ सब्जियां भी दिखाई दे रही हैं।

जो ढोल बजा रहे है और कुछ घर भी दिखा--